बोहोत घास फूस लगी हुई है इस घर में ये पुराना टूटा मुटा घर दिखाई पड़ रहा है यहाँ बोहोत सारे--

वना पेड़ है एक गाड़ी है और यहाँ मिट्टी भी बोहोत दिखाई दे रही है यह लाल और बैंगनी कलर का पुताया दिखाई दे रहा है ।

और यहां हरे घास दिखाई दे रही हैं ये मिट्टी का ढेर भी है यहां बोहत जानवर और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बाजार जैसा लग रहा है बस स्टेंड जैसा लग रहा है यहां बसे स्कुटरे आदमी बोहत कुछ मकान दुकाने सब कुछ यहां पर दिखाई दे रही है यहाँ--

ये लॉज जैसी जान पड़ रही है यहाँ बहोत सजावट है यहाँ लाल कलर की पोताई हुई है।